अं डेकोरेट किया गया है और काफी सुंदर डेकोरेट किया है और यहां फ्लावर की--

अ ये डेक्स के ऊपर में अं कंप्यूटर है।

ये कपड़े हैं गाले में रखे हुए पॉलिथीन में पैक करके रखे हुए ये जींस वगैरे हैं पैक किए हुए हैं और एकदम में को ब्लाउज --

और इधर दो चेयर है जो की कोई बैठे नहीं हैं और उधर--